यहां पर सफाई भी है पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

येलो कलर की लाइट्स बर--

कहीं पर पेड़ पौधे उगा रखे हैं।